एंड एक केक्स की नकंपनी दिखाई दे--

पर बॉयज की इस्पेशल टी शर्ट --

है जिसमें कई सारी मशीनें लगी--

है जिसमें कई सारी गाड़ियां भी चलती--

रही है इसमें बहुत सारे अलग--

के महल में बहोत सारे व्यू अच्छे लग --

थे जिसमें एक यग्नी शमक यन --

रहा है जहां पर ऑटो रिक्शा और--

हमे मुझे एक बहोत बड़ा--

और यहां पर गाड़ी की--

इस इमेज में बहुत सारे लोग योगा करते हुए दिख--

रहे थे और यह योगा करने से सब कुछ--

दिख रही है उस के नीचे कई सारे लोग खड़े--